मुझे इस पिक्चर में एक ब्लैक कलर की बड़ी सी कार नज़र आ रही है।

मुझे इस पिक्चर में एक खाली बड़ा सा रूम दिखाई दे रहा है वहां सोफे रखे हुए है और टेबल भी रखी हुई है।

वहां एक चेयर रखी हुई बड़ी सी और एक छोटी चेयर रखी है।

वहां काफी सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं जैसे कि--

सीताफल एप्पल पपीता संतरा अनार केला--

वह बहे जा रहे है पानी भी साफ लग रहा है।

मुझे इस पिक्चर में एक प्लांट नर्सरी नजर आ रही है।

मुझे इस पिक्चर में एक पेट्रोल पंप नजर आ रहा है।

एक बाइक खड़ी हुई है और एक कार खड़ी हुई है।

जिसका नाम है स्टेट बैंक ए_टी_एम --

बाहर काफी लोगों की भीड़ भी लगी हुई है।

मुझे इस पिक्चर मे एक स्कूल दिखाई दे रहा हैं।

जिसका नाम है मासा सुंदरी पब्लिक स्कूल स्कूल की बिल्डिंग काफी चौड़ी है।

मुझे इस पिक्चर में एक जिम दिखाई दे रहा है।

जिसका कलर येलो और ब्लैक है।

सड़क की तरफ एक बैठने की चेयर है।